वहाँ पे ग्राउंड में बैठ के योगासन कर रहे हैं जो बहुत ही बढ़िया और सुंदर दिख रहा है।

बहुत ही खूबसूरत आकर्षणिक लग रहे हैं यहाँ पे है।

जो मेंटेन किया जाता है रेगुलर बेसिस में --

स्प्राइड और मिनरल वाटर्स भी रखे हुए हैं शेल्फ में--